सामने एक ऑफिस है ऑफिस में एक रिसेप्शन दिखाई दे रहा है रिसेप्शन पे एक काले रंग का पी_सी एक कीबोर्ड एक माउस रखा हुआ है।

अह एल_ई_डी और नीचे तीन स्टूल लगे हुए हैं तीनों स्टूल के पास एक वो लगा हुआ तीनों बेड के पास में वो लगा हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा है।

पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है पार्क में एक पशु जो पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा हैं और एक डस्टबिन मोदा पड़ा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद और आसमानी कलर का है बिल्डिंग में तीन उपर गुंबद सा उपर बहोत ऊपर जा रहे हैं।